और बहोत सारे इस तरफ किताबें रखी हुई है फाइले रखी हुई है।

जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर पत्थरी पत्थर हैं और पीछे कुछ हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं और आगे भी--

जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक घर है और यहां पर कुछ टेबल कुर्सी लगी हुई हैं बैठने के लिए यहां पर दो भैया दीदी लोग बैठे हुए हैं टी_वी भी--

जैसे कि आप देख रहे हैं एक रोड पर एक कार खड़ी हुई है और यहां पर साइड में एक खम्मा भी लगा हुआ है।

जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक मस्जिद है और यहां पर एक अंकल बैठकर नमाज पढ़ रहे हैं और ऊपर कुछ पंखे भी लगे हुए हैं।

जैसे कि आप देख सकते हैं यह श्री राजेश्वरी--

जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर किसी चीज का सेलिब्रेशन चल रहा है और यहां पर बहुत सारी कुर्सियां लगी हुई हैं कुछ लोग बैठे हुए भी हैं।

जैसे कि आप देख रहे हैं यह एक जंगल टाइप है और यहां पर एक घर बना हुआ है नीचे ही एक जीप खड़ी हुई है गाड़ी और स्कूटी भी खड़ी हुई है।

और यहां पर कुछ हरे भरे पेड़ भी लगे हुए हैं और एक अ अ घर के ऊपर बनी हुई है यह और अ अ--

जैसे कि आप भी देख रहे हैं यहां पर एक केक रखा हुआ है जिसमें दिल ही दिल बने हुए हैं बहुत प्यारा केक लग रहा है वाइट कलर का है।

जैसा की आप देख रहे हैं ये मांटोय एंड गेम्स की दुकान है यहां पर बहुत सारे सामान टॉय वगैरह रखे हुए हैं।

जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर एक रोड है और यहां पर ऑटो खड़े हुए हैं एक बस भी खड़ी हुई है और बहुत सारे लोग बाग भी खड़े हुए हैं।

जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक दुकान है साड़ियों की यहां पर चूड़ी बिंदी वगैरह सब कुछ टंगा हुआ है रखा हुआ है और यहां पर राखियां भी टंगी हुई हैं।

और ये कुछ पीले कलर से शायद यह गैराज है।

जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक डेरी है और यहां पर गाय और भैंस खड़ी हुई है एक छोटा सा बच्छा भी खड़ा हुआ है।

जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर बहोत ही सारी पब्लिक खड़ी हुई है पता नहीं क्यों खड़ी है? और ऊपर बहोत ही हरे भरे पेड़ लगा हुआ है।

जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर एक जीप आ रही है ये एक पेट्रोल पंप है यहां पर पेट्रोल डलवाया जाता है व यहां पे कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई है।

ओर यहां पर कुछ दरिया वगैरह भी बहोत सारे कंबल वगैरह भी डाले हुए हैं कुछ लोग ऐसी ही बैठे हुए हैं।

बहोत सारे कलर है इन सीढ़ियो में और यहां पर दो स दार अंकल लोग भी चल रहे है।